बाइक के राइट साइड में एक पानी जैसा झील जैसा दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक बहोत बड़ा सा पहाड़ भी दिख रहा है और काफी नीला आसमान--

यहां पर एक बिल्डिंग दिख रही है जिसका की स्ट्रक्चर बन रहा है उसके नीचे में सामने में एक व्हाइट कलर का बोर्ड दिया हुआ है जिस पे कुछ लिखा हुआ है।

किनारे में झील के ती दो रिवर राफ्टिंग बोट भी दिख रहे हैं जिसमें से एक पे एक आदमी भी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर एक सम कंप्यूटर साइबर कैफे या फिर कंप्यूटर क्लास जैसा नजर आ रहा है इसके अंदर में काफी सारे लोग लाल कुर्सियों पे बैठ के कंप्यूटर चलाते हुए नजर आ रहे हैं।

में एक वॉल हैंगिंग टेबल फैन भी दिख रहा है।

रेत के ऊपर में छोटी छोटी नाव दिख रही है जो की ब्लू ब्राउन ऐसे सब कलर की है।

इस पिक्चर में आगे बहोत दूर में काफी सारे पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर काले घने बादल भी आ रहे--

पीछे में काफी बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं फोटो में।

यहां पर एक रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है। जिसके एक तरफ में काफी छोटे-छोटे फूल रखे हुए हैं और फूल के बगल में काफी बड़े छोटे-छोटे फव्वारे लगे हैं।

यहां पे कुछ लोहे का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है जिस पे दो बच्चे चढ़ के खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर काफी घना जंगल जैसा दिख रहा है जिसके बहुत आगे में एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है।

इस पिक्चर में दाईं तरफ में एक टेंपो भी खड़ा हुआ दिख रहा है जिसका की रंग व्हाइट कलर का है।

आगे में सामने में एक टी_वी भी दिख रहा है जो की ब्लैक कलर का है।

रेस्टोरेंट में वाल हैंगिंग वाले टेबल फैन लगे हुए हैं और विंडो पर मनी प्लांट रखा हुआ दिख रहा है।

पे दीवाल पे कुछ ब्ल्यू कलर का लगा हुआ है।

किनारे में दो तीन टेबल भी रखा हुआ है एक येलो कलर का और एक ब्राउन --

औरतों के पीछे एक बिल्डिंग जैसा है और एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है जिसके ऊपर में कुछ स्टेच्यू रखा हुआ है।

और गार्डन में काफी सारे बड़े बड़े हरे हरे पेड़ हैं।